ए चित्र तलाब के टप परसे लिया गया है। इसके केन इसने बोट नज़र आ रही है। कश्तीया तीन है।

एक महिला दिखाई दे रही है और कुछ लोग जो बैठ कर अपना भोजन आराम से खा रहे है।

न अम आरती करते ध्यान दिखाई दे रहे है हुम एक आदमी लाल रंग के कपडे पेहना दिखाई दे रहा --

में एक आदमी दिखाई दे रहा है जो अभी अभी अपने बाल कटवाकर आया है वे अपने बालों का डिज़ाइन दिखाने के लिए फोटो --

उपरोक्त चित्र किसी घूमने की जगह का दिया गया है इस चित्र मे एक नाला बना एक ब्रिज बना दिख रहा है एक पुल बना दिख रहा है एक गाड़ी खड़ी हुई है बहुत सारे आदमी औरते अपने गाड़ियो को इस पुल पे से ले जा रहे है।

इस चित्र में भगवानजी की मुर्तिया नजर आ रही है कुछ पुरुष निचे खड़े दिख रहे है।

ये चित्र हैं जी हाजीपुर जंक्शन से लिया गया है इस चित्र में कई सारी साइकिल और टांगे दिखाई दे रहे है।